पर निकासी भईल बा एके पीछे भी एक ठेला एक लकड़ी की अलमारी दिखाई देत बा और बगल में भी कुछ लकड़ी का --

जो ने की सफ़ेद रंग का कपड़ा पह्न्न्ल होवन और किनारे की तरफ पेड़ दिखात हो और कुछ झंडा भी दिखात हो ।